उस आखिर कार्नर में मुझे येलो कलर का टेबल और चेयर नजर आ रहा है।

दीवार का कलर सफेद नजर आ रहा है।

उन कुर्सियों का कलर लाल और काला है।

दुकान के दीवार पर तरह तरह के पिक्चर बनाया हुआ है जहां पिज़्ज़ा लिखा हुआ है।

यहां आसमान का रंग आग़ की तरह नजर आ रहा है।

जहां एक नदी है और सामने एक छोटा सा हट ।

मुझे यहां एक छोटा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

घर के दाएं और रोड है।

उसके ऊपर एक बोर्ड है जिस जिस पर के_जी_एफ लिखा हुआ है।

यहां ढेर सारे व्यक्ति पूजा कर रहे है।

आदमी के पीछे कारपेट बिछाया हुआ है जिसका कलर हरा है।

उसके अंदर मुझे दो चेयर नजर आ रही हैं जो प्लास्टिक का है।

अलग अलग पुतला के ऊपर अलग अलग मालाएं पहने हुए हैं।

तस्वीर में मुझे एक टेबल नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक ग्लास है।

ग्लास के अंदर एक स्ट्रॉ भी है।

इसके अंदर ढेर सारे सामान दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कार पार्किंग की है।

पंडाल के अंदर ढेर सारे इंसान नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के पीछे एक पुराना बिल्डिंग नजर आ रहा है।

लड़का है जिसके हाथों हाथ में हेलमेट है।

मैदान के उस पर ढेर सारे पेड़ पौधे नजर आ रही हैं।

यहां पर मुझे ढेर सारे पेड़ पौधे नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे छोटे से ग्राउंड पे तीन लोग नजर आ रहे हैं।

उन तीनों लोगों के हाथों पर बैम्बू है।

जिम का दरवाजा खुला हुआ है।